ओर सामने कुछ पत्थर भी हैं यह पत्थर के चारों तरफ कुछ पौधे भी हैं।

यह केम्प में बहोत सारा टेंट हैं थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ है और आसमान में कुछ बादल --

पिक्चर मे एक पुरानी सी गेट है यह गेट में बहोत सुन्दर सी कारीगिरी करी गई है और यह गेट में अरबिक से कुछ लिखा हुआ है।

पिक्चर में एक वाईट कलर की स्कूटी है यह स्कूटी के हैंडल पर एक लुकिंग ग्लास है।

और एकेडमी के दरवाजे पर ब्लू रंग के परदे लगे हुए हैं एकेडमी के अंदर एक --